यहां पर एक रोड एरिया है यहां फुटपाथ पर कुछ लोग मछली बेच रहे हैं यहां पर एक वाइट कलर की बाल्टी रखी हुई है।

यहां पर एक कैफे है जहां पर काफी सारी चेयर और टेबल लगी हुई है यहां पर टेबल पर दो कप रखे हुए हैं प्लेट में--

यहां पर एक तखट डला हुआ है जिस पर कुछ बिस्तर रखे हुए हैं।

यहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ है यहां पर एक लड़का बैठा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पैन रखी है आई कार्ड डाल रखा --

कैप लगा रखा है यहां पर एक रेड ब्लैक कलर की बाइक आ रही है जिस पर एक लड़का बैठा है।

यहां पर कुछ गमलों में पौधे लगे हुए हैं यहां पर सी ग्रीन कलर की चेयर पड़ी हुई है और कुछ सोफे पड़े हुए हैं।